एक घर के निचे सीढ़ी भी रखा हुआ है।

यहाँ पे पत्थर भी है यहाँ पे अ दो --

ढेर सारे बच्चे टेबल पर कुछ रखकर टेबल पर कुछ रखकर बना रहे हैं ।

यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है जो ब्लू कलर का है वाईट कलर का है यहाँ पे ढेर सारे आदमी लोग भी है।

एक यहाँ पे एक साथ पास में एक बड़ा- सा पेड़ है जो --

ऑरेंज कलर हैं और नीचे पूरा भूरा रंग हैं और--

यहाँ पे एक बड़ा- सा तार है जो --

और बगल में एक घर है जो वाइट और ब्लू से पेंट किया हुआ हैं ।

पे अंदर में एक आदमी भी खड़ा है बाहार से --

और जंगल की तरह दिख रहा है और बहोत --

यहाँ पे ढेर सारे डॉक्टर लोग खड़े हैं जो फोटो खिंचवाए हैं।

पोस्टर भी चिपका हुआ है जो रंग बिरंग के दिख रहे है।

थोडा सा है जो रेड कलर का हल्का है।

ऎ दीवार का कलर ग्रे लग रहा हैं ।

यहाँ पर जीम करने वाले मशीन रखे गए हैं जो की--

उधर बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ है टेबुल रखा है।

है यहाँ पर घने - घने पेड़ है अगल - बगल --

जो मैरून और येल्लो कलर का हैं ।

यह खेत है जिसमे छोटे - छोटे --

यहाँ पे ढेर सारा कप लटकाया गया है।